नमस्कार दोस्तों स्ट्रिंग्स के साथ शुरूआत पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे स्ट्रिंग्स को भिन्न प्रकार से परिभाषित करने में
स्ट्रिंग्स को श्रेणीबद्ध करने में
एक स्ट्रिंग को बारम्बार प्रिंट करने में
स्ट्रिंग के अलग अलग एलीमेंट्स को एक्सेस करने में
स्ट्रिंग की अचल स्थिति को सीखने में
टर्मिनल खोलें और इपिथॉन टाइप करके आई पाईथन खोलें और एंटर दबाएँ
अतः स्ट्रिंग्स क्या हैं
पाईथन में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या तीन सिंगल कोट्स या तीन डबल कोट्स के अंदर कुछ भी स्ट्रिंग्स होते हैं
अतः यदि आप सिंगल कोट्स के अंदर टाइप करते हैं थिस इस आ स्ट्रिंग फिर डबल कोट्स में थिस इस आ स्ट्रिंग टू

फिर ट्रिपल कोट्स में थिस इस अलसो आ स्ट्रिंग ध्यान दें कि वाकई में यह मायने नहीं रखता कि स्ट्रिंग में कितने अक्षर हैं
अतः हम नल या खाली स्ट्रिंग भी रख सकते हैं
जब कंट्रोल कैरेक्टर्स में से एक खुद स्ट्रिंग का भाग हो तो स्ट्रिंग्स को निर्धारित करने के लिए एक कंट्रोल कैरेक्टर से अधिक रखना सुविधात्मक होता है
उदाहरणस्वरुप आप डबल कोट्स में टाइप कर सकते हैं पाइथॉन्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस आरे वेरी यूजफुल कई कंट्रोल कैरेक्टर्स रखने से हम एस्केपिंग कैरेक्टर्स हाइफन हाइफन से बच सकते हैं इस उदहारण में अपोस्ट्रोफ है
अब ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स पर चलते हैं
चलिए बिना किसी एस्केपिंग इस्तेमाल किये बहु लाइन स्ट्रिंग्स निर्धारित करते हैं
ट्रिपल कोट्स के अंदर सब कुछ एक सिंगल स्ट्रिंग है उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लाइन्स तक यह खिचता है
अतः हम टर्मिनल में ट्रिपल कोट्स के अंदर टाइप कर सकते हैं हेविंग मोरे थान ओने कंट्रोल कैरेक्टर टो डिफाइन स्ट्रिंग्स कोम एएस वेरी हैंडी व्हेन ओने ओएफ थे कंट्रोल कैरेक्टर्स इत्सेल्फ इस पार्ट ओएफ थे स्ट्रिंग
अतः हम इस स्ट्रिंग को किसी भी वेरिएबल के लिए निर्धारित कर सकते हैं
अतः टाइप करें आ विथिन सिंगल क्वोट्स हेलो कॉमा वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन और एंटर दबाएँ
अब आ एक स्ट्रिंग वेरिएबल है
स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का समूह है
इसके अलावा स्ट्रिंग एक अपरिवर्तनशील समूह है जिसका मतलब कि स्ट्रिंग एक बार बनने के बाद नहीं बदली जा सकती
अतः सभी ऑपरेशंस जो पाईथन में किसी अन्य अपरिवर्तनशील समूह पर लागू होते हैं वे स्ट्रिंग्स पर भी कार्य करेंगे
अतः हम दो स्ट्रिंग्स जोड़ सकते हैं
अतः टाइप करें आ विथिन सिंगल क्वोट्स हेलो और एंटर दबाएँ ब विथिन सिंगल क्वोट्स वर्ल्ड सी आ प्लस इन सिंगल क्वोट्स कॉमा प्लस ब प्लस इन सिंगल क्वोट्स एक्सक्लेमेशन और एंटर दबाएँ फिर प्रिंट सी
अतः आपको आउटपुट हेलो कॉमा वर्ल्ड मिलेगा
हम इसी स्टेटमेंट में स्ट्रिंग वेरिएबल्स और साथ ही खुद स्ट्रिंग्स भी जोड़ सकते हैं
यही एडिशन ऑपरेशन दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है
उसी प्रकार से हम एक स्ट्रिंग को एक संख्या से गुणा कर सकते हैं
अतः टाइप करें आ इन सिंगल क्वोट्स हेलो टाइप करें आ इंटो 5 अतः हमें आउटपुट मिलेगा हेलो इंटो 5 यह अन्य स्ट्रिंग देता है जिसमें असली स्ट्रिंग हेलो 5 बार दोहराई गयी है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
बिना सभी बीस हाइफंस को टाइप किये स्ट्रिंग परसेंटेज परसेंटेज 20 हाइफेंस परसेंटेज परसेंटेज प्राप्त करें
अब स्ट्रिंग्स के अलग अलग एलीमेंट्स को एक्सेस करना देखते हैं
चूँकि स्ट्रिंग्स समूह हैं हम स्ट्रिंग में अलग अलग आइटम्स को सब स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं
अतः टाइप करें एस विथिन डबल क्वोट्स परसेंटेज परसेंटेज प्लस विथिन डबल क्वोट्स हाइफेन मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस विथिन डबल क्वोट्स परसेंटेज परसेंटेज और एंटर दबाएँ
अब आउटपुट पाने के लिए एस प्रिंट करें
आ स्क्वेयर ब्रैकेट में शून्य हमें स्ट्रिंग का पहला अक्षर देता है
पहले अक्षर के लिए इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और अंतिम अक्षर के लिए एन माइनस 1 तक जाती है जहाँ एन स्ट्रिंग में अक्षरों की कुल संख्या है
नेगेटिव इन्डिसेस का इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग्स को अंत से एक्सेस कर सकते हैं
अतः टाइप करें आ स्क्वेयर ब्रैकेट में शून्य और एंटर दबाएँ
आ स्क्वेयर ब्रैकेट में माइनस 1 हमें स्ट्रिंग का अंतिम एलीमेंट देता है और a 2 हमें स्ट्रिंग के अंत से दूसरा एलीमेंट देता है
अतः स्क्वेयर ब्रैकेट में माइनस 1 टाइप करें और एंटर दबाएँ फिर स्क्वेयर ब्रैकेट में माइनस 2 टाइप करें और एंटर दबाएँ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
एक स्ट्रिंग दी हुई है एस विथिन डबल क्वोट्स हेलो वर्ल्ड s माइनस 5 s माइनस 10 sminus 15 का आउटपुट क्या होगा
अब एस ओएफ 5 हमें द्व देता है
अतः टर्मिनल में टाइप करें एस ओएफ 5 और एंटर दबाएँ
एस ओएफ 10 हमें ई देता है
अतः हमें हाइफन के रूप में एक एरर मिलती है एस की वैल्यू का हेलो वर्ल्ड से अद्यतनीकरण करते हैं
टाइप करें एस हेलो वर्ल्ड अब एस ओएफ 5 इस द्व
तो हमें आउटपुट द्व मिलता है
अतः फिर टाइप करें एस ओएफ 10 यह हमें ई देता है
और एस ओएफ 15 हमें एक इंडेक्स एरर देता है जैसा की अपेक्षित है चूँकि हमें दी हुई स्ट्रिंग केवल 11 कैरेक्टर्स लम्बी है
स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को बदलने की कोशिश करते हैं
अतः टाइप करें आ हेलो और आ ओएफ 0 ह जैसा कि पहले बताया गया है स्ट्रिंग्स अपरिवर्तनशील होती हैं
हम एक स्ट्रिंग में हेरफेर नहीं कर सकते हैं
हालाँकि कुछ तरीके हैं जो हमें स्ट्रिंग्स में हेरफेर करने की अनुमति देते हैं हम उन्हें स्ट्रिंग्स पर अग्रिम सत्र में देखेंगे
तरीके जो हमें स्ट्रिंग्स में हेरफेर करने की अनुमति देते हैं उनके अलावा हमारे पास तरीके हैं जैसे स्प्लिट जो हमें निर्दिष्ट विभाजक पर स्ट्रिंग को तोड़ने की अनुमति देता है जोइन तरीका हमें निर्दिष्ट विभाजक पर स्ट्रिंग्स की सूचियों को मिलाकर एक अकेले स्ट्रिंग में बदलने की अनुमति देता है
जल्दी से दोहराते हैं हमने आज क्या सीखा
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा 1स्ट्रिंग्स को भिन्न तरीकों से परिभाषित करना
एडिशन क्रियान्वित करके स्ट्रिंग्स को जोड़ना
3एक स्ट्रिंग को मल्टिप्लिकेशन करके एन बार दोहराना
4एलीमेंट्स के सब स्क्रिप्ट्स इस्तेमाल करके स्ट्रिंग के अलग अलग एलीमेंट को एक्सेस करना
5और आखिर में स्ट्रिंग्स में अपरिवर्तनशील के सिद्धांत को इस्तेमाल करना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
स्ट्रिंग एस को इस कॉल्ड थे अपोस्ट्रोफ निर्धारित करने के लिए कोड लिखें
दी हुई स्ट्रिंग्स हैं एस और ट एस हेलो और ट वर्ल्ड एंड एएन इंटीजर र र 2 एस मल्टीप्लाई र प्लस एस मल्टीप्लाई ट का आउटपुट क्या होगा
3आप कैसे shello को बड़े ह के साथ sHello में बदलेंगे
अतः एस ओएफ 0 ह एस ओएफ 0single क्वोट्स में ह तीसरा ऑप्शन है स्ट्रिंग्स अपरिवर्तनशील होती हैं इसलिए बदली नहीं जा सकती
चलिए उत्तरों को देखते हैं 1
दी हुई स्ट्रिंग को इस तरह निर्धारित कर सकते हैं
अतः टाइप करें एस डबल क्वोट्स में इस कॉल्ड थे अपोस्ट्रोफ 2ऑपरेशन एस इंटो र प्लस एस इंटो ट प्रत्येक शब्द को दो बार टाइप करेगा हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड स्ट्रिंग्स अपरिवर्तनशील हैं
इसलिए ये बदली नहीं जा सकती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
धन्यवाद